और उन पे भी सामान रखा हुआ है।

और वे एक झूला भी है।

नीचे ये पेंट हो रहा है इनपे और छोटे-छोटे गमले रखे हुए जिनमें फुलवाडिया लगी हुई है।

और इसमें बाहर एक उम् पोस्टर लगा हुआ है।

जो की चफेरे इसमें हरे भरे पेड़ पहाड़ दिखाई दे रही है मिट्टी के।

और पीछे भी पत्थरों में दीवा दीवार बनी हुई--

इसमें एक मेज पड़ी है और एक बैड सा पड़ा हुआ है।

ये एक बहुत बड़ी दुकान है जिसमें बहुत सारा सामान लगा हुआ है।

ये एक बहोत बड़ा चट्टान है।

ये एक बड़ी सी दुकान है ट्रैक्टर एजेंसी है।

खिड़कियों पे शीशे लगे हुए हैं।

कुछ रखा हुआ है एक--